इन ज़ीनो के ऊपर भी सामान रखा है। बाल्टी वगेरा रखे हैं। प्लास्टिक के रेड कलर के वाइट कलर के छोटे-छोटे स्टूल वगेरा रखे हुए हैं। बच्चों के टॉयज वगेरा रखे हुए हैं।

रोड के दर भी पत्थर पड़े हुए है आई साइक मे और बड़े-बड़े पेड़ पौधे बने हुए है घास है पूरे मैं और कुछ घास सुखी हुई है जो की ब्राउन ब्राउन कलर यहाँ पे रोड के ऊपर दो-तीन लोग जा रहे है।

एक एयरटेल एयरटेल मोबाइल शॉप यहां एयरटेल के सिम बगैरा मिलती है ऑफिस है फरो जी लिखा बना फोर जी का निशान बना हुआ कांच के ऊपर ट्रांसपेरेंट गेट --

एक बड़ा सा रेस्टोरेंट बना हुआ है रेस्टोरेंट पे है नहीं यहाँ पे हैप्पी हंग रोल्स लिखा हुआ है उसके ऊपर एंड बहुत सारे बलून लगा हुआ है दीवारों पे।

ये एक बस स्टैंड बना हुआ है इसमें बस खड़ी हुई है वाइट कलर की बहुत से लोग खड़े हुए हैं एक ब्लैक कलर का बाहर डस्टबिन टाइप पड़ा हुआ है --

पिलर बने हुए हैं येलो कलर के अंदर मंदिर में मूर्ति रखी हुई हैं भगवान जी के आस-पास में समान वगैरह रखा है एक एक पंडित जी बैठे हुए हैं वाइट कलर के ड्रेस में कालीन बिछा हुआ है अंदर।

अन बहुत सारे लोग है जो की बहार पूजा वगेरा कर रहे है दर्शन करने आए है लडिसे है जेन्ट्स है बच्चे है बड़े-बुड़े कुछ लोग फोटो खिच रहे है कुछ लोग दर्शन कर रहे--